क्लीनिक है जो कि यहाँ बहुत अच्छा --

ये एक मछली बाज़ार है जो कि बहुत मछली रखा हैं छोटा-बड़ा --

बहुत बच्चे नहा रहे हैं बहुत --

अच्छा लग रहा है दिखने में बहुत फूल लगा है रेड कलर का है सब बहुत --

घर है जो की बहोत अच्छा है सजाया है।

बोहोत लोग जाने में नाहा रहे हैं। बच्चे --

बहुत भीड़ भी है बहुत अच्छे से सजाया है बहुत लोग हैं।